और यहां ए_टी_एम भी नजर आ रहा है और यहां पर कुछ लोग बाहर अंदर खड़े दिखाई दे रहे--